यह चित्र एक होटल का है।

यह रस्ता बहुत सारी दुकानों से घिरा हुआ है।

यहां चिप्स के पैकेट भी दिख रहे हैं। आइसक्रीम भी है खा लो आप जाके।

डिटर्जेंट आदि सामान मिलता है इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है।

यहां बहुत सारे सफाई के समान मिलते है जैसे--

जहां मुस्लिम लोग कुरान पढ़ने जाते हैं।

यहां बहोत सुंदर खेत और पेड़ पौधे हैं।